पथरीले पहाड़ दिख रहे पथरे रे पहाड़ के अजूबाजुमे कुच्छ जमीने कुछ सूखे पत्ते दिख रहे है हरे पेड़ दिख रहे है और नीला गगन आसमान दिख रहा है।

चारो तरफ आसमान मे नीला-नीला दिख रहा चारो तरफ हरियाली ही हरियाली जगह दिख रहा है बहोत ही खूप सूरत और रमनीय यह वातावरण यह दिख रहा है धन्यवाद।

खूबसूरत वॉटर पार्क है इस वाटर पार्क में गोल राउंड कमान चार-पांच ग्रील लगी हुई है।

एक गांव का मार्केट दिख रहा है यह गांव के मार्केट में हरी भरी सब्जीया आलू प्याज की दुकाने--